यहाँ पर बच्चे लोग आकर खेलते हैं यहाँ पर बच्चे लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं ।

अच्छा है यहाँ पर गरीब से लोग रहते हैं यह मास्टर के द्वारा इन बच्चों को पढ़ाया --

में हर सामान मिलता है यहाँ पर फल --

यहाँ पर लोग आकर डारीयां खरीदते हैं ।

यहाँ पर बहुत हरा-भरा है यहाँ आने --

यहाँ पर लोग आकर पैसा जमा करते हैं और पैसा निकासी करते हैं।